इतने देर से दिखाई दे रहे हैं | उम् उम् ट्रीज दिखाई दे रहे हैं और एक सुखी डाली नीचे पड़ी हुई है और यहाँ पर --

और यहाँ पर अ अ ऊपर की तरफ आगे के तरफ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक चेयर भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसी दिखाई दे रही है जो की वाइट दिखाई दे रही है उ और ऊपर ब्लैक -ब्लैक दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर डी.पी. वगैरह तार वगैरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहोत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं चेयर दिखाई दे रही है।

और साइड में सीढियाँ भी दि --

नीचे की तरफ एक कुर्शी जैसी भी दिखाई दे रही है जिस पर एक टॉवल रखा हुआ है।

ऐए बाउंड्री जैसी दिखाई दे रही है रिक्शा दिखाए दे रहा है कार वगेरा बहुत सारी कार दिखाई दे रही है।